एक ऑटो भी सड़क पर आते हुए नजर आ रहा है।

एक बिल्डिंग का कन्स्ट्रक्शन साइड नजर आ रहा है।

कुछ लेडिज बैंक के बाहर खड़ी है।

गेट के अंदर जाने के लिए पीले कलर का पेंट लगा।

एक सैलून जैसे कुछ शॉप नजर आ रही है।

एक रथयात्रा नजर आ रही है--

लाल कलर के भी पौधे नजर आ रहे है।

और उसमें पीले कलर के रंग से वो नजर आ रहा है सब।

कराने की अंदर में एक बड़ी अलमारी रखी हुई है।

व्यान करते हुए लोग हैं।

जोकि वाइट कलर की बॉउंड्री से झुरी हुई है यह बात।

एक व्यक्ति पेपर पढ़ते नजर आ रहा है।

इटें सीमेंट से बनी हुई बाउंड्री है।

इमारत जो है वो व्हाइट कलर की नजर आ रही है और।

दुकान जो है वो कपड़े की नजर आ रही है।

लोग खड़े हैं और मंडप जो हॉल के अंदर लगा हुआ हैं।